दुकान में बहुत सारे सामान हैं यहां में बहुत सारे चॉकलेट भी दिखाई दे रहा ने को मिल रहा है और नीचे में एक डस्टबिन है जो कि रेड कलर का है।

इस तस्वीर में मुझे दो बड़े बड़े बांस दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

बट उसके पीछे एक स्कूटी भी खरा हुआ है।

यह एक चर्च लग रहा है जोकि वाइट कलर से पेंट किया गया है।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

में बहुत सारे सुंदर से फर्नीचर्स लगाए हुआ है।

और पीछे में एक पर्दा लगा और बहुत सारे फर्नीचर्स लगा हुआ है।

एक डिस्पोजल गिलास भी दिखाई दे रहा है और बोतल भी और कप भी दिखाई दे रहा है और --

बहुत सारे किताब है उसके बाद एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसने पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इसके बाद साइड में एक बड़ा सा पेड़ भी है।

और उनके सामने एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है जिसमें मैथ से रिलेटेड कुछ लिख के है।

एक ब्यूटी पार्लर लग रहा है जिसमें एक आईना लगा हुआ है बड़ा वाला।

बहुत सारे टेंट टेंट भी है उसके बाद एक घर है जो की टीना से बना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सुंदर सा नजारा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहा है उसके बाद एक औरत भी है।

उसके बाद वो दोनों धूप को देख रहा है और एक पानी भी है।

में एक जमीन भी है और पीछे में बहोत सारे घास है बड़े बड़े।

और दो ठो फ्रिज है उसका बाद एक ठो अलमारी मे एल_जी लिखकर है ऊपर में।

कप्स भी है गिलास भी है उसके बाद एक बहोत सारे प्लेट भी है ब्लैक कलर का स्पून भी है उसके बाद फ्लावर पॉट से उसके ऊपर बहोत सारे फ्लावर्स भी है।

में कुर्सी है जो कि ग्रीन कलर से पेंट किया गया हैं।

ऊपर वाला बच्चा का पेंट पिंक कलर का है और उसने गंजी पहन के रखा है।

एक फ्रेम दिखाई दे रहा है घर का अंदर उसके बाद पर्दा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे वाशिंग मशीन सब दिखाई दे रहा है और फ्रिज भी है।

और सीधी भी है और पीछे में एक टावर पोस्ट भी है।